जो बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना है।

यह एक सुंदर क्लासरूम है।

यह एक नदी है।

नदी के चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां--

बहुत से झूले लगे हुए हैं।

कुछ बस के अंदर देख रहा है।

दो लोग बस के अंदर बैठे--

एक माता की मूर्ति है।

एक काली मां की भव्य सुंदर मूर्ती है।

कुछ नल के पानी नीचे गिर रहे हैं।

येलो कलर के--

जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

साइड में बहोत सारी--

बहुत ज्यादा पेरे लगी हुई हैं।

जिसे बिल्डिंग भी बोल--

खजूर के पौधे लगे हुए हैं।

जहां पर ग्रोसरी का सामान दिख रहा है।

सुंदर जगह है।

जहां बच्चों को--

एक बच्चा बैडमिंटल खेल रहा है।

यहां बहुत से बच्चे--

सर बोर्ड पे प्रोजेक्ट बता --

साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे एंट्री जी एम लिखा है।

दो लोग बाहर खड़े हैं।

यह एक नदी है।

कुछ लोग उधर साइड --

कुछ लोग नदी में स्नान कर रहे हैं।

जैसी बुक रखने वाली--

यह एक रेस्टोरेंट है।

अकेले बैठी हुई है।

एक बड़ी बिल्डिंग है।

और तार भी लगे--

कुछ लोग थक के बैठ गए हैं।

और एक काउंटर है जो कि--

यह एक सीढ़ी है।

पौधा सीढ़ी पे सजाने के लिए--

जो दिखने में सुंदर--

यह एक सुंदर सा--

यह एक बहुत सुंदर--

जहां पर पेट्रोल --

खड़े हैं और कुछ--